ऑरेंज कलर के लटकन मे कुछ लटके हुए है और कुछ व्हाइट कलर के लटकन मे लटके हुए है।

और इंतजार कर रहे हैं और पीछे की तरफ दो आदमी खड़े हैं जो आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गले में मोफलर पहन रखा है और टाई लगा रखी है और ये सेल्फी ले रहा है।

कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं और एक टायर है जिसपे येलो और ब्लैक कलर की डिजाइन बनाई गई है।

ये एक पार्टी हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें ऑरेंज और पर्पल कलर के बैलून से --

ये एक गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है।

उसी के पास में उसके पास एक कार्टून रखा हुआ है जिसमें शायद वो मछलियां पैक करके ले जाता ही होगा।

इसमें बाहर की ओर एक दरवाजा लगा हुआ है।

यहां पर सभी तरह की आइसक्रीमो के चित्र बने हुए हैं।

उनके दोनों के सर पे एक एक टोकरियाँ रखी हुई है और वो आपस में बातचीत करती हुई नजर आ रही है।

ये एक गेस्ट हाउस की फोटो नजर आ रही है जो की सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।

यहां बाहर बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई दिखाई दे रही है और एक ए_सी का आउट डोर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक मैदान की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए है कुछ कुछ खड़े हुए हैं।

ये एक मॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुर्तियां टी शर्ट है।

यहां कुछ लोग खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत ही बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें स्टील की सीढ़ियां लगी हुई दिखाई दे रही है।